यहां लाईटें भी लगी हुई हैं।

एक भी दिखाई दे रहा है।

पुराना दर्शनीय स्थल है जहां से एक रोड जा रहा है।

टैग जी_पी_एस और सारी चीजे बनाई जाती है।

होटल में बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

सब अपने अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं।

ऊपर लाइटिंग भी लगी हुई है।

ये कुछ टेबले और कुर्सियां भी रखी हुई है।

और यहाँ एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और यहां कुछ काम भी चल रहा है सामने घड़ी लगी हुई है।

ये जो हरे रंग के हैं यहां ऊपर एक पेड़ है।

आ है और हरा भरा है।

सामने एक बैंक है बैंक पर ह--

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर मॅक लिखा हुआ है।

एक कांच की दीवाल है जिस पर झंडे भी लगे हुए हैं।

और स्वास्तिक भी बना हुआ है।

पहाड़ पर पेड़ है और बहोत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां भी है।

यह एक होटल है होटल का नाम केवल श्री है।

यहां एक पौधा भी रखा हुआ है।

औरतें आ रही है जिसने साड़ी पहनी हुई है और यह चर्च--

सजा भी हुआ है शायद किसी की शादी भी है।

यहां सामने मोसम्बी दिखाई दे रही हैं।

और पीछे की तरफ कुछ केले भी टंगे हुए है।

एक आदमी खड़ा हुआ है और कुछ लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं।